नीचे दो तीन जे_सी_बी दिखा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर जैसे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बैलून बहुत सारे बैलून से जिनका कलर --

इस तस्वीर में एक मैकेनिक की शॉप दिखाई दे रही है।

जिनका कलर व्हाइट है और सा आसपास पेड़ पौधे लगे हैं।

तहीर में एक ये टोल जैसा दिखाई दे रहा है।

और एक पे ऊपर बोर्ड चढ़ा हुआ है जिसपे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

इसपे हिंदी से कुछ लिख के है अलग अलग सर्फेस पे अलग अलग चीजें रखे है।

बहुत कुछ है और तोलने वाला एक अंडा भी है।